और मुझे बंबू भी दिखाई दे रहा है।

और मुझे ऊपर बादल छाया हुआ भी दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर बहुत बड़ा घर दिखाई दे रहा है।

और मुझे बाएं साइड में एक बूढ़ा जाते हुए भी दिखाई दे रहा है।

राइट साइड में एक स्कूटी भी मुझे दिखाई दे रहा है।

और मुझे यहां पर टेबल भी दिखाई दे रहा है।

और मुझे यहां पर बहुत सारा जंगल दिखाई दे रहा है।

घर का पूरा गेट दिखाई दे रहा है।

और मुझे दूर में ये पानी का नल भी दिखाई दे रहा है।

और मुझे बादल भी दिखाई दे रहा है।

और मुझे मंदिर का पीछे एक गास भी दिखाई दे रहा है।

और मुझे यहां पर एक जूता का शोरूम दिखाई दे रहा है।

आ ये पंखा भी दिखाई दे रहा है।

टी_वी दिखाई दे रहा है और बाए साइड में एक गाय भी दिखाई दे रहा है।